टेबल रखा हुआ है काठों का जिसके ऊपर एक देवता का मोती लगा हुआ है।

यहां पे एक ट्वेल्व स्टेशन दिखाई दे रहा है।

साइड से गार्डवाल में बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है जो फूलों का पेड़ है।

पास में एक प्लास्टिक का चेयर रखा हुआ है चेयर के ऊपर में एक बैग रखा हुआ है।

बेड के ऊपर कुछ ड्रेस वगैरह रखा हुआ है।

पे एकदम दाण टान रहा है।

बाइक स्कूटी है सब पार्किंग कर के रखा है सामने मै कुछ बंद खड़ा है कुछ बैठा है।

रखा है बड़ा सा उसके सामने कांचों का सेंटर टेबल खा हुआ है।

और लोग को बासी बजा रहा है दंत्र बजा के गाना गा रहा है।

यहां पे एक दुकान का अंदर का चित्र दिखाई दे रहा है जहां पे सामने टेबल में कुछ--

ये बरा-बरा छामने में लाइट दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बड़ा सा वाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है स्कूल का बिल्डिंग हो रहा है।

एक बंदा मुंह में डाल के रखा है एक बंदा मोबाइल घीच रहा है एक बंदा बैठा है। पिज़्ज़ा में हाथ देके --

यहां पे एक छाग बैठा है उसके सामने उसका बच्चा है दूर में कुछ अरबी छाग खड़ी है ।

एक सीरी दिखाई दे रहा है घाट का जहां पर एक बंदा खड़ा है।